इसका कलर मुझे दिखाई दे रहे हैं और सामने की ओर एक व्हाइट स्क्रीन दिखाई दे रही हैं जिसके ऊपर एक रेड पट्टी और उसके पिक्चर दिख रही हैं और यहाँ पर मुझे कुछ वाल पंखे भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हाइलाइट कैमेरे भी हैं।

और पीछे की और मुझे बहुत सारा पहाड़ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मुझे आसमान में बहुत सारे बादल दिखाई दे रहे है यहाँ पे एक सड़क दिखाई दे रही है जो सिर्फ चार फुट की है उसके आगे बहोत सारी जंगली घासे दिखाई दे रही है।

मुझे एक घर दिखाई दे रहा है हम इसे महल भी कह सकते है और यह रात का समय हो रहा है और घर के ऊपर बहुत सारी सीढ़ी लगी हुई दिखाई दे रही है क्योंकि बहुत ही लाइट चमक रही है।